ऐ फोटो एक सीख मंदिर की फोटो दिखाई दे रही है जिसमें एक टेंट लगा हुआ दिखाई दे रहा है।

इसमें बहुत सी लाइटें भी जलती हुई दिखाई दे रही हैं।

ए फोटो एक किसी मजार का फोटो दिखाई दे रहा है जिसमें कुछ लोग मजार पर चादर चढ़ाते हुए दिखाई दे रहे हैं।

बाहर बहोत सारी बाइक खड़ी हुई दिखाई दे रही हैं।

चर्च का फोटो दिखाई दे रहा है जिसमें बोहोत सी खिड़की भी लगी हुई दिखाई दे रही हैं।

सामने एकबी अलमरा में बहुत सा सामान रखा हुआ दिखाई दे रहा है नीचे टाइल्स भी बिछी हुई है।

जिसमें एक लड़का बैठकर अपने बाल कटवा रहा है और दूसरा लड़का उसके बाल काटता हुआ दिखाई दे रहा है।

इसमें बोहोत सी कुर्सियां डली हुई दिखाई दे रही हैं।